टी_वी लगा नजर आ रहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाल काटने खड़ा है।

गुरुवार बंद लिखा है केवल महिलाओं के लिए इस दीवार पर लिखा हुआ--

ये चित्र एक मछली मार्केट का दिखाई दे रहा है इसमें व्यक्ति नीचे प्लास्टिक पर बहोत सारे मछली के बच्चे पटक के बैठा हुआ है।

व्यक्ति गमछा बाना हुआ है और सफेद और पिंक कलर की जैकेट पहेना अ शर्ट पहना हुआ--

एक पीछे रिक्शा खड़ा दिखाई दे रहा हैं सामने की तरफ कारें नजर आ रही है कुछ जीने दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में बहोत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ एक गार्डन बना हुआ है जिसमें हरे भरे पेड़ लग रहे हैं।